चढ़ते हुए नज़र आ रहे है गिट्टी और सीमेंट ले कर साइड में बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई है ईंट रखे हुई है गीठ का ढेर है।